यखा मा हम देख सक्दु कि यखा मा हमि एक कार्यालय भितरे की तस्वीर दिखेण लगीं जखा मा हमि एक टेबलन दिखेण लग्युं और टेबल प-का किनारा --

यखा मा हम देख सक्दु कि यखा मा हमि एक बड़ु सा पीलु घरन दिखेण लग्युं और तै घर का भितर हमि एक कमरा पर सलुन खोलण दिखण लग्युं।

यखा मा हम देख सक्दु कि यखा मा हमि एक झील कु दृश्यन दिखेण लग्युं जख झील फंड छकि सारा लोगन नयेण लग्यां।